टेबल व्हाइट कलर आ ब्लैक कलर की है।

कलर का बॉक्स लगा हुआ है।

बड़ी सी नदी दिख रही है इसके अंदर।

स्टील लगी है रेलिंग की।

रोड बनी हुई है जिसमें घास निकली है थोड़ी सी।

इसके अंदर पेड़ लगे हुए हैं पीछे वाले बड़े बड़े।

ये एक जिम है जिसमें ज़मीन में टाइल लगी नीली और रेड कलर की।

ब्लैक कलर का लोहा दिख रहा है।

ये एक नदी है जिसके तरफ ब्रिज बना हुआ है।

तकिया लगी हुई है चादर है इसके अंदर व्हाइट कलर की।